इस दृश्य में हमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी कोचिंग सेंटर का है जिसका नाम हमे पीछे लगे पोस्टर पर दिखाई दे रहा है।

यहा पर बहुत सारे आदमी लोग बैठे हुए है और ऊपर में लाल कलर का लाई--

इस चित्र में हमें एक होटल दिखाई दे रहा है ।

ध्यान से देखें तो स्टेज पर दो डी_जे भी रखे हुए हैं।

और यहां पर हमें सलाद का दृश्य भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में हमे ढेर सारे आदमी लोग दिखाई दे रहे है जो कि बैठे हुए है।

इसके बगल में एक महिला खड़ी है और महिला के बगल में एक बाइक दिखाई दे--

इस दृश्य में हमें एक गाड़ी सीखने वाला इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमे कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं।

जो सबसे आगे कुत्ता है वह भोक रहा है।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का है यहां पर कि बहुत सारे आदमी लोग खड़े हैं।

इसके बगल में पूजा के सारे सामग्री उपलब्ध है।

यहां पर दो गार्ड बैठे हुए हैं।

जिनके हाथों में बंदूक भी है और वे लाल कलर के कुर्सी--

और यहां पर पीछे तीन आदमी भी खड़े हैं।

यह दृश्य एक बस स्टैंड का दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का दृश्य है लकड़ी के मदद से यहां पर बहुत सारा अलमीरा बनाया गया है।

और यहां पर एक प्लाईवुड भी टूटा हुआ है।